यहाँ पर कपल है यहाँ पर ग्राउड है या खेलने के लिए यहाँ सूरज वूरज है।

ज ऊपर पहाड़ भी है उधर पहाड़ जगल है उधरी--

यहाँ देखिए यहाँ ऊपर से पूरा जंगल उंगल दिख रहा है नदी उदी दिख रहा हैं।

ए देखिए यहाँ पे लड़का लड़की आए है पोस्टर भी है बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पोस्टर ओसटर लगा है बहुत लोग हैं यहा पे--

जो दिख ही रहा होगा एदम अच्छा दिखता है एदम सुंदर-सुंदर और आम उम फलता हो --